पे ना अ-एक अअ दुकान है कटिंग की और यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए हैं बाहर जो मास्क लगाए हुए हैं।

अअअ एक व्हाइट ब्लू कलर की मेट बिछी हुई है और क्रीम कलर की इस पर रखी हुई है और इनका कलर है क्रीम कलर ।

इतना ए बहुत सारी छड़ ही छड़ बिछी हुई हैं यहाँ पे कुछ लोग ईंट सीमेंट रेत का गाढ़ा बना रहे हैं।

फिर बस खड़ी हुई है और यहाँ पे ना बहुत सारे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है